टायल का कलर यहां हमें व्हाइट दिख रहा है।

और एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है।

बोर्ड लगे है जो की वाइट कलर के है लिखा गया है।

यहां पर हमें बहोत सारे भगवान की फोटो है।

जो कि सीमेंट से बनी हुई है।

एक बोर्ड लगा हुआ है वाइट कलर का।

चांदी सबसे शुद्ध लिखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

कारपेट का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है।

कुछ बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं।

यहां पर एक होटल टाइप दिख रहा है।

और व्हाइट कलर की यहां दीवारे दिख रही हैं।

और नीचे की ओर हमें व्हाइट कलर दिख रहा--

जिसमें की ग्रीन कलर के कुछ फूल लगे हैं।

साथ में हमें यहां पर दिख रहा है पीछे एक ब्लू कलर का तिरपाल--

छोटा सा फूल दिख रहा है रेड कलर का।

दुकान में कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर का यहां पर फ्लोर दिख रहा है।

ब्लू कलर का तिरपाल दिखाई दे रहा है।

साथ में छोटे छोटे मंदिर लकड़ी के बने हुए।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहां पर है।

साथ में टेबल दिख रहा है जो की रेड कलर की चादर है।

और ऊपर कि ओर बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं।

और कुछ छोटे छोटे पोल लगे हुए हैं सिल्वर कलर के।

यहां दिखाई दे रहा है झरना--

जिसमें व्हाइट कलर का पानी बेह रहा है।

दीवारों पर लकड़ी का काम किया गया है।

बॉक्स बने हुए हैं कांच का यहां पर--